ये पर अ बगल लाल-लाल डंडा खढ़ान कर्यां जो पर लाल लाल रस्सी बांधी बिचम एक बाल्टी खाली रखीं ई पर ऐ स्टीकरन रैलिंग पर रैलिंग जब स्टीकर चिपकायां दीवाल पर बड़ा बड़ा।

जंगलो लग्युं जंगलो जंगला के भीतर कुछ काम चलणु।

याका बगलम किताब रखीं अगाड़ी ब-भी बहोत सारी किताब यून रखीं पंखा अभी चलन नी लग्युं बल्ब एंच बल्ब लग्युं।

शॉपिंग मोल कु आ नजारा लगी है सारी जमीन परफर्श पर सफेद टाइले लगी हैब्राउन टाइले लगी हैं।